यह तस्वीर में एक हॉल दिख रहा है जिसमे बेंचे लगी हुई है एक व्यक्ति लेटा हुआ है जो पीले रंग की शर्ट पहना हुआ है पीछे कुछ व्यक्ति बैठा हुआ है ऊपर पंखे दिख रहे है।

यह तस्वीर एक सरकारी भवन की है एकरा सामने एक बैनर दिख रहा है जो नीले रंग का है उसके सामने पीले रंग की पट्टियां दिख रही है इसमें तीन दुकाने है जिसके ऊपर नीले रंग की और पीले रंग के बैनर लगे है सामने कुछ बाइक खड़ी हुई है।

यह एक पेट्रोल टैंक की तस्वीर है इसमे पेट्रोल टेंक पूरा व्हाइट कलर से पैंट है इसके सामने एक बाइक खड़ी है उसके साइड मे एक साइकिल खड़ी है सामने एक ऑटो है उसमे दो व्यक्ति नजर आ रहे है ।